यहां पर नीचे पार्किंग की एरिया आपको दिख सकती है उसमे रेड कलर और बने हुए हैं जहां पर दो तीन आदमी ऊपर जाने की ट्राय कर रहे है ।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे अ बाईक्स बाहर खड़े है और राइट साइड में आपको पार्किंग दी हुई है और बीच में एक दरवाजा है जहाँ पर आप ऊपर जाके --

फ्रॉम फर्निश मार्बल निचे लगे हुए है जो बहुत चमक रहे है यहां पर एक आदमी बैठ के फोन चला रहे है।